और वो एक गमला भी दिखाई दे रहा है और इसके अलावा बाहर का नजारा भी हल्का हल्का दिख रहा है।

व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने गॉगल लगा रखे हैं और उसकी शर्ट के --

का शॉप दिखाई दे रहा है इसके अलावा--

बहुत सी पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और यहां एक व्यक्ति और एक औरत भी दिखाई दे रहे हैं जो सफाई कर रहे हैं और ये दृश्य बहुत --

रिजॉर्ट लग रहा है और यहां--

कोई फंक्शन हो रहा है जिसकी तैयारी हो रही है।